इनके चेहरे ब्लर दिखाई दे रहे हैं ऊपर पंखा है ऊपर फ़र्श व्हाइट कलर का है पंखा लगा हुआ है फैन लगा हुआ है जिसे हवा आ रही है।

सौर लाइट लगी हुई है पीछे पेड़ है देवदार के बहुत बड़े बड़े पेड़ है कुछ गुब्बारे दिख--

येलो कलर का गुब्बारा मुझे दिखाई दे रहा है पीछे स्कूटर है बाइक खड़ी हुई है।

यहां पे बहुत सारे घर है और ऊपर काला आसमान है।

और ऊपर प्रकाश है प्रकाश की रोशनी नीचे आ रही है कुछ परछाइयां दिखाई दे रही है।

घर के ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है बहोत बड़ा आसमान है जिसमें बदलस हैं।

बहोत सारी क्रीमें रखी गई है इसमें एक औरत का चित्र किया गया है जो की बस भी दिखाई दे रही है येलो कलर की है नीचे टेबल है।

पीछे दीवार है जो कि नीले रंग की है यहां पर तीन पतके दिखाई दे री है।

बैनर्स का रंग अलग अलग है इन पर इंग्लिश के शब्दों से कुछ लिखा गया है बहुत बड़ी बिल्डिंग है ऊपर एक स्टैचू है स्टैचू के साइड में उसके ऊपर एक और स्टैचू है।

कुछ फर्श जैसा फर्श के ऊपर कुछ टोकरी रखी हुई हैं टोकरी में समान है।

यहां पर एक रोड है रोड के पल्ली साइड कुछ पेड़ है पेड़ के पीछे पहाड़े पहाड़ों पर बड़े पेड़ है दो पोल लगे हुए है ऊपर नीला आसमान है।

हरे भरे पेड़ है कुछ सूखे पेड़ है कुछ सूखे पेड़ो की टहनियां है ऊपर आसमान है जो की--

सफेद रंग का है झाड़ियां बहुत ही गहरी है और नीचे जो पानी लगा है पानी के ऊपर जो--

पीछे बैठे हुए ब्लैक कलर की पैंट पहनी है।

और बैनर्स लगे हुए है नीचे प्रगति बुक लिखा गया है जो की नीले रंग का है।

फर्श के पल्ली साइड और चटाई लगी हुई है पीछे ब्लैक क कलर का जिसमें जिम लिखा हुआ है और ये खंभे लाल रंग के हैं दो से तीन खंभे हैं वर्कआउट करने के लिए मशीन हैं मशीने मशीनों ब्लैक कलर की है।

और यहां पर कम्प्यूटर बैठाए गए है। कुछ लोग यहां चेयर पे बैठे हुए है। चेयर लकड़ी की बनी हुई हैं इन्होंने ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए है।

साथ ही खिड़कियां है खिड़कियां लकड़ी की बनी हुई हैं।